यहां पर तीन मंजिला एक वीमार्ट मॉल है जहां शिशा का गेट लगा हुआ है।

जिसके अंदर काफी सारे लाइट्स लगे हुए हैं जिसके बाहर काफी सारे हीरो के बाइक्स खड़े हैं कार है और ट्रे ट्रेक्टर्स भी है| यहां आसपास बहुत सारे पेड़-पौधे हैं।

यहाँ पर एक कठोता रखा है जिसमें काफी सारी मछलियां है और आसपास कुछ लोग है| ये मछलियाँ कुछ अजीब टाइप में दिख रही है और यहाँ पर काफी सारी मछलियाँ है।

इस ब्रिज पानी में यहाँ हाथी है| हाथी के ऊपर एक लड़का है लड़का ब्लैक कलर का टी-शर्ट हाफ पैंट और एक लाठी के सहारे खड़ा है।

यह एक खुला स्थान है जिसके आसपास काफी सारे पत्थर फेके हुए हैं और यहां पर पानी लगा हुआ है और आगे कुछ ऊंचा स्थान है जिसके आसपास काफी सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।